यह एक योगा क्लास है यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

यहाँ पर एक गोल वाला बोहोत बड़ा झूला लगा हुआ है जिसमें एक ही बारी में बहोत से लोग सवार कर सकते हैं।

बैंक के बाहर कुछ लोग खड़े हुए है और यहाँ पर बहोत से लोग पैसे की लेनदेन के लिए आते है।

यह ऑटो लाइन बार खडी हुई है इन ऑटो में रोजाना बहोत से लोग सवारी करते हैं।

इस बिल्डिंग के आजु-बाजु बहोत से हरे-भरे पेड़ पौधे लगे हुए है और दिवालो पर कुछ लिखा हुआ है।